और यहाँ पे बहुत सारी क्रीम है जो लड़कियाँ लोग लगाती है बालों फेसो में लगाती है ऐसे-ऐसे क्रीम और इस दुकान मैं सिर्फ क्रीम ही मिलता है। काफी मस्त दुकान है ये। इस दुकान में लकड़ी का बना हुआ काउंटर पे रखा गया है क्रीम को।

यह एक बिज़नेस दुकान है जहाँ पे हर सामान मिलता है। यहाँ पे और अलग-अलग रूम में जो अलग-अलग सामान मिलता है। हर दुकान में एक सामान मिलता है।

काफी बड़ा-बड़ा पत्थर भी होते हैं यहाँ पे और अच्छा लगता है देखने में भी सीन काफी मस्त लगता है देखने में। एक व्यक्ति है यहाँ पे।